और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और पटरी पर पत्थर दिखाई दे रहे है।

कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है वा लेडिस कपड़े लगे हुए नजर आ रहे हैं।

गोंदिया ऐसा लिखा हुआ नज़र आ रहा है।